इस पिक में पांच मजदूर नजर आ रहे हैं जो की इस मकान को बना रहे हैं ये किसी ते हुए मकान की पिक है।

ए कलर पेंसिल भी रखे है ब्रेंचेस भी दिखाई दे रही है बॉर्डर बोर्ड भी दिखाई दे रहा है बहोत साड़ी ब्रेंचे --

ये पिक्चर एक डांस अकादमी की दिखाई दे रही है जिसमें बच्चो को डांस सिखाया जा रहा है |

इस में बेंचे भी नजर आ रहे हैं तथा स्कूल के बाहर पेड़ भी लगे हुए हैं | खुले आसमान से रौशनी नजर आ रही है |

यह एक स्कूल की पिक है जिसमें क्ला किसी क्लास के अंदर को बच्चों को पढ़ाया जा रहा है|

तथा पेड़ें कई पेड़ें नजर आ रहें ये गणतंत्र है स गणतंत्र शहर का वो नजर आ रहा है।